सामने की तरफ एक मेंढक की आकृति भी बनी हुई है।

इस फोटो में एक इमारत दिखाई गई है।

इमारत के सामने एनीटाइम फिटनेस लिखा हुआ है।

फोटो में सामने की तरफ एक पहाड़ी दिखाई गई है।

कंस्ट्रक्शन साइट की छत पर सरियों का ढांचा बना हुआ है।

गुरुद्वारे की फर्श पर दरा बिछा हुआ है।

एक व्यक्ति सीढ़ियों पर चलता हुआ दिख रहा है।

बहुत सारे बैनर लगे हुए हैं।

कुछ बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं।

खाली जगह को दिखाया गया है।

एक मशीन से कार को ऊपर उठाया गया है।

दो मकैनिक इस कार की जांच कर रहे हैं।

रास्ते के दोनों तरफ कुछ पेड़--

हवाई अड्डा दिखाया गया है।

तिरंगा झंडा लगा हुआ है।

इस फोटो में किसी पेट्रोल पंप का दृश्य--

कुछ गाड़ियां भी पेट्रोल पंप के अंदर दिख रही है।

पीछे की तरफ स्लाइड वाले झूले भी दिख रहे हैं।

सूखे पत्ते पड़े हुए हैं।

मंदिर में भगवान की मूर्तियां दिख रही हैं।

कुछ लोग इस नदी में पूजा भी कर रहे हैं।

कुर्सी व मेज की व्यवस्था भी की गई है।

इस फोटो में स्टेशनरी की एक दुकान दिखाई गई है।

छत पर कुछ लाइटें भी लगी--

फोटो में सामने की तरफ एक इमारत दिखाई गई है।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

नदी के बगल में एक पुल भी है।

बड़े पौधों के अलावा कुछ फूल के पेड़ भी लगे हुए हैं।